यह एक हवेली या कुछ है।

पास मे ही अंगौछा भी रखा हुआ है।

बाहर की चीजें नजर आ रही है।

जो इस शोरूम का आनंद ले रहे हैं।

रिक्शा का रंग सफेद है और कार का भी सफेद है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लोग बाइक से हैं तो कुछ स्कूटी से तो कुछ कार से।

और उसके पास में ही एक फोन भी लगा हुआ है।

बहोत अच्छी डेकोरेशन हुई है।

नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के बलूंस से फोर पेयर बना करके डेकोरेशन की गई है।

और नेवी ब्लू के कपड़े पहने हुए हैं।

और एक चेयर खाली है।

टहलते हुए नजर आ रहे हैं।

रेलिंग भी है और उसके अंदर पेड़ हैं।

इस झील के किनारे पर छोटे छोटे से घास के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बहुत से सामान रखे हुए हैं।